बीच में जूस की बॉटल्स भी रखी हुई हैं साइड में--

अपने मरीजो का चेकअप कर रहे हैं।

दो लोग इकट्ठे बैठकर खाना खा रहे हैं।

सभी लोग एक स्थान पर बैठे बातें कर रहे हैं।

काफी सुंदर है इस रुम में टू चेयर वन टेबल एक सोफा भी पड़ा है सोफे के ऊपर--

ये जिम का दृश्य है जिम में काफी सारे डंबल पड़े हैं।

इसमें कई आदमी घुटनों के बार बैठकर उठ बैठक कर रहे हैं।

सैलून के केबिन पर एक फोन पे का स्कैनर भी पड़ा है।

कर रहे हैं और इंजॉय कर--

गौ माता जानवर नहीं देश की जान हैं।

साइंकल घर की छत के ऊपर खड़ी हैं।

बाहर काफी गट्टे पड़े हैं कुछ गट्टो में प्याज--

ये एक स्कूल की तस्वीर है स्कूल का नेम अनेका सीनियर स्केनड्री पब्लिक स्कूल है।

इस तस्वीर में हवन की तैयारी की जा रही है दो पंडित हवन की सामग्री तैयार कर रहे हैं उनके पास--

ये प्रत्येक बीमारी का इलाज केवल पांच दिनों में करते हैं घुटनों का दर्द सिर दर्द--

पेट दर्द कमर दर्द जोड़ों में दर्द आदि को ठीक--

पैलेस में दूल्हा दुल्हन की शादी हो रही है।

ये टूल टैक्स की तस्वीर है। टूल टैक्स के बाहर काफी लाइटें जगमग कर रही है।

के सामने इलेक्ट्रिक स्टेयर्स भी जा रहे हैं।

ये गौशाला की तस्वीर है गौशाला में काफी गाय अंदर--